ईहाँ मैं देख रही हूं कि एक औरतें खड़ा हुआ है।

यहाँ मैं देख रही हूँ एक पार्क अ जोकि बिल्कुल खाली है। कोई लोग यहाँ नहीं हैं।

पानी का बोतल है ईहाँ फोन पर भी मिलता है इस दुकान पर।

जो भांग चुकी है बिल्कुल भी ठीक-ठाक नहीं है।

यहाँ मैं देख रही हूं यह एक अस्पताल है इसके बाहर बहुत सारे बाइक खड़ा हुआ है।